एक तलाब की तस्वीर है इसमें बहोत बड़ा टायर पड़ा हुआ है।

ये तस्वीर एक ऑफिस की है।

साथ में कुछ बिल्डिंग भी बनी हुई हैं जो कोई कार्यालय--

बहोत सारे टेबल और कुर्सियां इसमें रखी हुई है।

छत पर पंखे भी लगे हुए हैं।

ये तस्वीर एक बहोत बड़ी बिल्डिंग की है।